और ए_टी_एम के अंदर एक डस्टबिन है।

दूसरे कोने पे कुछ आदमीयो बैठा हुआ है और कुछ खड़ा हुआ है।

दुकान खुला हुआ है और उसके आगे पर सामान लटका हुआ है।

रूम पर ए_सी भी है।

बिल्डिंग के आगे दो हरा पेड़ है।

यह एक मांस बाजार का फोटो है।

स्टोर रूम पर एक ब्ल्यू कलर का सोफा सेट है।

इस रूम के अंदर एक टी_वी भी है।

कैफे के अंदर बहोत सारे चेयर और टेबल भी है।

मैदान के पीछे पेड़ और पहारिया है।

एक लंबा सा सफेद टेबल है।

और मैदान के पीछे पहाड़ है।

ये एक होम जिम के फोटो है।

और कुछ ग्लू के कंटेनर भी दिखाई दे रहा है।